और जूते पानी में बहोत अच्छे लग रहे हैं और उधर ही--

देखने से एक रेस्टोरेंट लग रही है।

ऊपर में लाइट है नीचे में टाइस है।

और ब्लैक कलर के जंजीर है ऊपर में पेड़ है।

और ऊपर में आसमान है तीनों लोग सरवोट चला--

चार पेड़ वाली क्या लगया है।

और कई लड़के लोग नाच डांस करते हुए दिखाई दे रहे है एक लड़की पिंक कलर की --

एक बाइक वाले हैं और एक पैदल चल रहे हैं।

देखने से एक छोटी सी झील लग रही है।

औ कई इंसान खेलते हुए नजर आ रहे हैं।